पीछे की तरफ एक बैटरा व एक मेज व एक सिलेंडर और कुछ पेप्सी की रखी हुई दिखाई दे रही --

यहां पे एक कुर्सी पड़े हुई दिखाई दे रही है जो काले कलर की है और सामने की तरफ दिवाल पर एम_आई टैटू स्टूडियो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर दीवाल के ऊपर माता श्री शाकुंभरी देवी मंदिर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इसके हाथ में झाड़ू है व एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसके दिवाल पर--

माता जी की तस्वीर बनी हुए है साइड में लाल रंग का एक छोटा सा मंदिर और दिखाई दे रहा है।

यहां नीचे एक लोहे का गेट पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

वे एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे एनिमल कुत्ते बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसपे जी_पी_एस लीगा हुआ है पीछे की तरफ भी एक सीएट का नीले रंग का बोड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

और यहां पर एक आदमी हाथ में थैला ले जाते हुए दिखाई दे रहा है।

कुर्सियों पर कुछ बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं वे चारों तरफ हरे रंग की चटाई पड़ी हुई है।

यहां पर एक छत के ऊपर बहुत सारे कूलर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

वॉल की बाउंड्री के अंदर छोटी छोटी घास है कुछ अमरूद के पेड़ कुछ आम के पेड़ पर साइड में काले रंग की पन्नी दिखाई दे रही है।

आगे की तरफ एक गाड़ी दिखाई दे रही है जो सफेद कलर की है।

और नीले रंग का शटर में नीले रंग का लोहे का गेट दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक छत दिखाई दे रही है जो पीले रंग के लाइटों से जगमगा रही है जिसके बीच में दो पंखे लगे हुए हैं।

व सामने की तरफ एक आदमी लोहे का कुछ खंभा लिए हुए साथ में खड़ा है।

अधिक एक दीवाल दिखाई दे रही है जीस पर पीले रंग का पेंट होता हुआ दिखाई दे--

यहां सामने की तरफ सफेद अक्षरों से छठ एवं कार्तिक पूर्णिमा--

व बोर्ड पर कुछ औरत की तस्वीरें बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

पीछे की तरफ मंदिर की चोटी दिखाई दे रही है जो सफेद रंग की है।

हाथी के दो दांत दिखाई दे रहे हैं जो सफेद कलर के हैं।

और तीन से चार लाइटें जली हुई दिखाई दे रही है जो सफेद कलर की हैं।

यहां पर हरे भरे खाली मैदान में बहुत सारी चेयर है गोलाकार मेज पड़ी हुई है।

और पीछे की तरफ बहोत सारी लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही हैं जो पीले कलर की हैं।

छोटे छोटे सीमेंट के खंभों पे लगी हुई लाइटें दिखाई दे रही है।

इनपे बीच में फाइव इंडिया टैटू इंटरनेशनल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

वह कुछ आदमी ने सर पे प्री पिंक कलर का कपड़ा बांधे हुए हैं।

कुछ गेंदे के फूलो से गेट पर सजावट करी गई है।

वे घर के चारों तरफ नीले कलर की बाउंड्री हो रखी है।

पानी की लहरें सफेद रंग की ऊंची ऊंची उड़ती हुई दिखाई दे रही है आगे की तरफ पुल पर एक औरत और एक आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहा है।